उनकी गाड़ी का रंग व्हाइट कलर का है और उनके पैरों का रंग ब्लैक कलर का--

उनका ड्रे ड्रेसों का रंग है एक का हरा रंग है एक का पीला है एक का ये --

हमे सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद दिखाई दे रही है।

कार खड़ी हुई पौधे लगे हुए हैं बो ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं आस वो ब्लू कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान कलर के अंदर--

छतों का रंग उनका ब्राउन कलर का हैं ऊपर बैलून लगे हुई हैं साइडों में कुर्सियां लगी हुई हैं उन कुर्सियों का रंग ब्राउन कलर का हैं।

दुकान के अंदर डॉक्टरों का सामान पड़ा हुआ है एक साइड उसमें बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं सामने दो बड़ी बड़े फ्रेम लगे हुए हैं।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

एक सामने हमे एक कुछ तारे दिखाई दे रहे है। एक पानी वाली बॉटल पड़ी हुई--

हमें एक बहुत सारा गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के अंदर अलग अलग पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं सामने हमें एक औरत दिखाई दे रही है।

एक बहोत बड़ी अलमारी बनी हुई है एक छो--

ओ सीडीओ का रंग हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है सामने एक बहोत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है।

और पिंक कलर कर पिंक कलर दिखाई दे रहा है और--

के पड़े हुए हैं टॉफियां पड़ी हुई हैं पैकेट दिखाई दे रहे हैं सब अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं।